मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
सर्दी का मौसम अब जाने को है वसन्त के मौसम ने हम सबके जीवन में दस्तक दे दी है पतझड़ के बाद पेड़ों में नये पत्ते आने लगते हैं फूल खिलते हैं बाग़बगीचे हरेभरे हो जाते हैं पक्षियों का कलरव मन को भाने लगता है फूल ही नहीं फल भी पेड़ की शाखाओं पर खिली धूप में चमकते नज़र आते हैं
ग्रीष्म ऋतु के फल आम के मंजर वसन्त में ही दिखने लग जाते हैं वहीं खेतों में सरसों के पीले फूल किसानों को उम्मीदें बंधाते हैं
टेसू या पलाश के सुर्ख फूल होली के आने का संकेत करते हैं
अमीर ख़ुसरो ने मौसम के इस बदलाव के पलों का बड़ा मज़ेदार वर्णन किया है अमीर ख़ुसरो ने लिखा है
फूल रही सरसों सकल बन
अम्बवा फूटे टेसू फूले
कोयल बोले डारडार
जब प्रकृति ख़ुशनुमा होती है मौसम सुहावना होता है तो इंसान भी इस मौसम का पूरा लुत्फ़ उठाता है
वसन्त पंचमी महाशिवरात्रि और होली का त्योहार इंसान के जीवन में ख़ुशियों के रंग डालता है
प्रेम भाईचारा मानवता से ओतप्रोत वातावरण में हम आख़िरी महीने फाल्गुन को विदा करने वाले हैं और नये मास चैत्र का स्वागत करने को तैयार बैठे हैं वसन्त ऋतु इन्हीं दो महीनों का तो संयोग है
मैं सबसे पहले तो देश के लाखों नागरिकों का इस बात से आभार व्यक्त करता हूँ कि मन की बात के पहले जब मैं सुझाव माँगता हूँ ढ़ेर सारे सुझाव आते हैं
NarendraModiApp पर ट्विटर पर फेसबुक पर डाक से मैं इसके लिये सबका आभारी हूँ
मुझे शोभा जालान उन्होंने NarendraModiApp पर लिखा है कि बहुत सारी पब्लिक इसरो की उपलब्धियों के बारे में अवेयर नहीं है
और इसलिये उन्होंने कहा है कि मैं 104 सैटेलाइट्स के लॉन्च और इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में कुछ जानकारी दूँ शोभा जी आपका बहुतबहुत आभार कि भारत के गर्व की मिसाल को आपने याद किया
चाहे ग़रीबी से निपटना हो बीमारियों से बचना हो दुनिया से जुड़ना हो ज्ञान जानकारियाँ पहुँचाना हो टेक्नोलॉजी ने विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज़ करा दी है
15 फ़रवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है
हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊँचा किया है
और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं
मंगल ग्रह पर मार्स मिशन मंगलयान भेजने की कामयाबी के बाद अभी पिछले दिनों इसरो ने अन्तरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया
इसरो ने मेगा मिशन के ज़रिये एक साथ विभिन्न देशों जिसमें अमेरिका इज़राइल कज़ाकस्तान नीदरलैंड स्विट्ज़रलैंड यूएई और भारत भी 104 सैटेलाइट्स अन्तरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं
एकसाथ 104 सैटेलाइट्स को अन्तरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया
और ये भी खुशी की बात है कि यह लगातार 38वाँ पीएसएलवी का सफल लॉन्च है
यह न केवल इसरो के लिये बल्कि पूरे भारत के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है
इसरो का यह कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम सारी दुनिया के लिये एक अजूबा बन गया है और विश्व ने खुले मन से भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को सराहा है
भाइयोबहनो इन 104 सैटेलाइट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्टोसैट 2D ये भारत का सैटेलाइट है और इसके माध्यम से खींची हुई तस्वीरों संसाधनों की मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आकलन अर्बन डेवलपमेंट के प्लानिंग के लिये उसकी बहुत मदद मिलेगी
ख़ास करके मेरे किसान भाईबहनों को देश में जो सभी जल स्रोत है वो कितना है उसका उपयोग कैसे हो सकता है क्याक्या ध्यान रखना चाहिए इन सारे विषयों पर ये हमारा नया सैटेलाइट कार्टोसैट 2D बहुत मदद करेगा
हमारे सैटेलाइट ने जाते ही कुछ तस्वीरें भेजी हैं
उसने अपना काम शुरू कर दिया है
हमारे लिये ये भी ख़ुशी की बात है कि इस सारे अभियान का नेतृत्व हमारे युवा वैज्ञानिक हमारी महिला वैज्ञानिक उन्होंने किया है
युवाओं और महिलाओं की इतनी ज़बरदस्त भागीदारी इसरो की सफलता में एक बड़ा गौरवपूर्ण पहलू है
मैं देशवासियों की तरफ़ से इसरो के वैज्ञानिकों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
आम जनता के लिये राष्ट्र की सेवा के लिये अन्तरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ऑब्जेक्टिव को वे सदैव बनाये रखा है और नित नयेनये कीर्तिमान भी वो रचते जा रहे हैं
हमारे इन वैज्ञानिकों को उनकी पूरी टीम को हम जितनी बधाइयाँ दें उतनी कम हैं
शोभा जी ने एक और भी सवाल पूछा है और वो है भारत की सुरक्षा के संबंध में
भारत ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है उसके विषय में
इस बात की ज़्यादा अभी चर्चा नहीं हुई है लेकिन शोभा जी का ध्यान गया है इस महत्वपूर्ण बात पर
भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है
इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी वाले इस मिसाइल ने अपने ट्रायल के दौरान ज़मीन से क़रीबक़रीब 100 किलोमीटर की ऊँचाई पर दुश्मन की मिसाइल को ढेर करके सफलता अंकित कर दी
सुरक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है और आपको जान करके ख़ुशी होगी दुनिया के मुश्किल से चार या पाँच ही देश हैं कि जिन्हें ये महारत हासिल है
भारत के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया और इसकी ताक़त ये है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी भारत पर आक्रमण के लिये कोई मिसाइल आती है तो ये मिसाइल अन्तरिक्ष में ही उसको नष्ट कर देती है
जब नई टेक्नोलॉजी देखते हैं कोई नई वैज्ञानिक सिद्धि होती है तो हम लोगों को आनंद होता है
और मानव जीवन की विकास यात्रा में जिज्ञासा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और जो विशिष्ट बुद्धि प्रतिभा रखते हैं वो जिज्ञासा को जिज्ञासा के रूप में ही रहने नहीं देते वे उसके भीतर भी सवाल खड़े करते हैं नई जिज्ञासायें खोजते हैं नई जिज्ञासायें पैदा करते हैं और वही जिज्ञासा नई खोज का कारण बन जाती है
वे तब तक चैन से बैठते नहीं जब तक उसका उत्तर न मिले
और हज़ारों साल की मानव जीवन की विकास यात्रा का अगर हम अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की इस विकास यात्रा का कहीं पूर्णविराम नहीं है
पूर्णविराम असंभव है ब्रह्मांड को सृष्टि के नियमों को मानव के मन को जानने का प्रयास निरंतर चलता रहता है
नया विज्ञान नयी टेक्नोलॉजी उसी में से पैदा होती है और हर टेक्नोलॉजी हर नया विज्ञान का रूप एक नये युग को जन्म देता है
मेरे प्यारे नौजवानो जब हम विज्ञान और वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम की बात करते हैं तो कई बार मैंने मन की बात में इस बात को कहा है कि हमारी युवापीढ़ी का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए
देश को बहुत सारे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है
आज का वैज्ञानिक आने वाले युगों में आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक स्थायी बदलाव का कारण बनता है
महात्मा गाँधी कहा करते थे नो साइंस हस ड्रॉप्ड फ्रॉम थे स्काइज इन आ परफेक्ट फॉर्म
अल्ल साइंसेज डेवलप एंड एआरई बिल्ट यूपी थ्राउघ एक्सपीरियंस
पूज्य बापू ने ये भी कहा था आई हेव नोथिंग बट प्रैसे फोर थे ज़ील इंडस्ट्री एंड सैक्रिफाइस थाट हेव एनिमेटेड थे मॉडर्न साइंटिस्ट्स इन थे पर्सूट आफ्टर ट्रथ
विज्ञान जब जनसामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन सिद्धांतों का सहज उपयोग कैसे हो उसके लिए माध्यम क्या हो टेक्नोलॉजी कौन सी हो क्योंकि सामान्य मानव के लिये तो वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है
पिछले दिनों नीति आयोग एवं भारत के विदेश मंत्रालय ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के समय एक बड़ी यूनिक प्रकार की कॉम्पिटिशन की योजना की थी
समाज उपयोगी इनोवेशन को इनवाइट किया गया
ऐसे इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करना शोकेस करना लोगों को जानकारी देना और ऐसे इनोवेशन जनसामान्य के लिये कैसे काम आएं मस्स प्रोडक्शन कैसे हो उसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन कैसे हो और मैंने जब उसे देखा तो मैंने देखा कि कितने बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं
जैसे अभी एक इनोवेशन मैंने देखा जो हमारे ग़रीब मछुआरे भाइयों के लिये बनाया गया है
एक सामान्य मोबाइल App बनाई है लेकिन उसकी ताक़त इतनी है कि मछुआरा फिशिंग के लिये जब जाता है तो कहाँ जाना सबसे ज्यादा फिश ज़ोन अच्छा कहाँ पर है हवा की दिशा क्या है स्पीड क्या है लहरों की ऊँचाई कितनी है यानि एक मोबाइल App पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध और इससे हमारे मछुआरे भाई बहुत ही कम समय में जहाँ अधिक मछलियाँ हैं वहाँ पहुँच करके अपना अर्थउपार्जन कर सकते हैं
कभीकभी समस्या भी समाधान के लिये विज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित करती है मुंबई के अन्दर 2005 में बहुत बारिश हुई फ्लड आया समंदर में भी भरती आ गई और बहुत परेशानियाँ हुईं
और जब कोई भी प्राकृतिक संकट आता है तो सबसे पहले संकट ग़रीब को आता है
दो लोगों ने बड़े मन से इसमें काम किया और उन्होंने एक ऐसे मकान की रचना को विकसित किया जो ऐसे संकट से घर को बचाता है घर में रहने वालों को बचाता है जल भराव से भी बचाता है वाटर बोरने डिसीज से भी बचा सकता है
ख़ैर बहुत सारे इनोवेशंस थे
कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में देश में इस प्रकार की भूमिका के लोग बहुत होते हैं
और हमारा समाज भी तो टेक्नोलॉजी ड्राइवेन होता जा रहा है व्यवस्थायें टेक्नोलॉजी ड्राइवेन होती जा रही हैं
एक प्रकार से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन रही है
पिछले दिनों डिजिधन पर बड़ा बल दिखाई दे रहा है
धीरेधीरे लोग नकद से निकल करके डिजिटल करेंसी की तरफ़ आगे बढ़ रहे हैं
भारत में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है
ख़ास कर के युवा पीढ़ी अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल पेमेंट की आदी बनती जा रही है ये शुभ संकेत मानता हूँ मैं
हमारे देश में पिछले दिनों लकी ग्राहक योजना डिजिधन व्यापारी योजना उसको भारी समर्थन मिला है
क़रीबक़रीब दो महीने हो गये हैं प्रतिदिन 15 हज़ार लोगों को एक हज़ार रुपये का इनाम मिलता है
और इन दोनों स्कीमों के ज़रिये भारत में डिजिटल भुगतान को एक जनआन्दोलन बनाने की एक पहल पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है
और ये ख़ुशी की बात है कि अब तक डिजिधन योजना के तहत दस लाख लोगों को तो इनाम मिल चुका है पचास हज़ार से ज़्यादा व्यापारियों को इनाम मिल चुका है और क़रीबक़रीब डेढ़ सौ करोड़ से भी ज्यादा रकम इस इनाम में इस महान अभियान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को मिली हैI इस योजना के तहत सौ से ज़्यादा ग्राहक ये हैं जिनको एकएक लाख रुपये का इनाम मिला है चार हज़ार से ज़्यादा व्यापारी वो हैं जिनको पचासपचास हज़ार रुपये के इनाम मिले हैंI किसान हों व्यापारी हों छोटे उद्यमी हों पेशेवर हों घरेलू महिलायें हों विद्यार्थी हों हर कोई इसमें बढ़चढ़ करके हिस्सा ले रहा है उनको लाभ भी मिल रहा हैI जब मैंने उसका एनालिसिस पूछा कि भई देखिये सिर्फ नौजवान ही आते हैं कि बड़ी आयु के लोग भी आते हैं तो मुझे ख़ुशी हुई कि इनाम प्राप्त करने वालों में 15 साल के युवा भी हैं तो पैंसठसत्तर साल के बुज़ुर्ग भी हैंI
मैसूर से श्रीमान संतोष जी ने हर्ष जताते हुए NarendraModiApp पर लिखा है कि उन्हें लकी ग्राहक योजना के तहत एक हज़ार रुपये का रिवार्ड मिलाI लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए उन्होंने कहा कि मुझे एक हज़ार रुपये का ये रिवार्ड मिला और उसी समय मेरे ध्यान में आया कि एक ग़रीब वृद्ध महिला के घर में आग लग गई थी सामान जल गया था तो मुझे लगा कि जो मुझे इनाम मिला है शायद इसका हक़ इस ग़रीब वृद्ध माँ का है तो मैंने हज़ार रुपये उसी को दे दिएI मुझे इतना संतोष मिलाI संतोष जी आपका नाम और आपका काम हम सबको संतोष दे रहा हैI आपने एक बहुत बड़ा प्रेरक काम कियाI
दिल्ली के 22 वर्षीय कार चालक भाई सबीर अब वो अपने कामकाज में नोटबंदी के बाद डिजिटल कारोबार से जुड़ गए और सरकार की जो लकी ग्राहक योजना थी उसमें वो एक लाख रुपये का इनाम मिल गया
अब आज वो कार चलाते हैं लेकिन एक प्रकार से इस योजना के एम्बासाडोर बन गये हैं
सभी पैसेंजरों को पूरा समय ये डिजिटल का ज्ञान देते रहते हैं
इतने उत्साह से बातों को बताते रहते हैं औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं
महाराष्ट्र से एक युवा साथी पूजा नेमाड़े जो pजी
की छात्रा हैं उन्होंने भी रूपे कार्ड इवॉलेट का उपयोग अपने परिवार में कैसे हो रहा है और इसको करने में कितना आनंद आ रहा है इसका अपना अनुभव अपने साथियों को शेयर करती रहती हैं
और एक लाख रुपये का इनाम उसके लिये कितना मायने रखता है लेकिन उसने इसे एक अपने मिशन मोडे में ले लिया है और वो भी औरों को इस काम के लिये लगा रही हैं
मैं देशवासियों से देश के युवकों से ख़ासकर करके और इस लकी ग्राहक योजना या तो डिजिधन व्यापार योजना उन्हें जो इनाम मिला है उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप स्वयं इसके एम्बासाडोर बनिए
इस आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए
आप इसको आगे बढ़ाइए और ये काम एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ़ जो लड़ाई है इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका है इसकी
इस काम में जुड़े हुए हर कोई मेरी दृष्टि से देश में एक नई एंटीकरप्शन कैड्रे हैं
एक प्रकार से आप शुचिता के सैनिक हैं
आप जानते हैं कि लकी ग्राहक योजना सौ दिन जब पूरे होंगे 14 अप्रैल डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मजयंती का पर्व है यादगार दिवस है
14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपयों के प्राइज का द्रव होने वाला है अभी क़रीब चालीसपैंतालीस दिन बचे हैं
बाबा साहेब अम्बेडकर को याद रखते हुए क्या आप एक काम कर सकते हैं अभीअभी बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती गई है
उनका स्मरण करते हुए आप भी कमसेकम 125 लोगों को भीम App डाउनलोड करने का सिखाएँ उससे लेनदेन कैसे होती है वो सिखाएँ और ख़ास करके अपने आसपास के छोटेछोटे व्यापारियों को सिखाएँ
इस बार की बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती और भीम अप्प इसको विशेष महत्व दें और इसलिये मैं कहना चाहूँगा डॉ बाबा साहेब ने रखी नींव को हमें मज़बूत बनाना है घरघर जाकर सबको जोड़ कर 125 करोड़ हाथों तक भीम App पहुँचाना है
पिछले दोतीन महीने से ये जो मूवमेंट चला है उसका असर ये है कि कई टाउनशिप कई गाँव कई शहरों में बहुत ही सफलता प्राप्त हुई है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मूल में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है
गाँव की आर्थिक ताक़त देश की आर्थिक गति को ताक़त देती है
मैं आज एक बहुत ख़ुशी की बात आपको कहना चाहता हूँ
हमारे किसान भाइयोंबहनों ने कड़ी मेहनत करके अन्न के भंडार भर दिए हैं
हमारे देश में किसानों के परिश्रम से इस वर्ष रेकॉर्ड अन्न उत्पादन हुआ है
सारे संकेत यही कह रहे हैं कि हमारे किसानों ने पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये है
खेतों में इस बार फ़सल ऐसी लहराई है हर रोज़ लगने लगा जैसे पोंगल और बैसाखी आज ही मनाई है
इस वर्ष देश में लगभग दो हज़ार सात सौ लाख टन से भी ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है
हमारे किसानों के नाम जो आख़िरी रेकॉर्ड अंकित हुआ था उससे भी ये 8 ज़्यादा है तो ये अपनेआप में अभूतपूर्व सिद्धि है
मैं विशेष रूप से देश के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूँ
किसानों का धन्यवाद इसलिये भी करना चाहता हूँ कि वे परंपरागत फ़सलों के साथसाथ देश के ग़रीब को ध्यान में रखते हुए अलगअलग दालों की भी खेती करें क्योंकि दाल से ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन ग़रीब को प्राप्त होता है
मुझे ख़ुशी है कि मेरे देश के किसानों ने ग़रीबों की आवाज़ सुनी और क़रीबक़रीब दो सौ नब्बे लाख हेक्टेयर धरती पर भिन्नभिन्न दालों की खेती की
ये सिर्फ दाल का उत्पादन नहीं है किसानों के द्वारा हुई मेरे देश के ग़रीबों की सबसे बड़ी सेवा है
मेरी एक प्रार्थना को मेरी एक विनती को मेरे देश के किसानों ने जिस प्रकार से सिरआँखों पर बिठा करके मेहनत की और दालों का रेकॉर्ड उत्पादन किया इसके लिये मेरे किसान भाईबहन विशेष धन्यवाद के अधिकारी हैं
मेरे प्यारे देशवासियो ये हमारे देश में सरकार के द्वारा समाज के द्वारा संस्थाओं के द्वारा संगठनों के द्वारा हर किसी के द्वारा स्वच्छता की इस दिशा में कुछनकुछ चलता ही रहता है
एक प्रकार से हर कोई किसीनकिसी रूप में स्वच्छता के संबंध में जागरूक व्यवहार करता नज़र आ रहा है
सरकार निरंतर प्रयास कर रही है
पिछले दिनों वाटर एंड सैनिटेशन का जो हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
हमारे सचिव के नेतृत्व में 23 राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यक्रम तेलंगाना में हुआ और तेलंगाना राज्य के वारंगल में सिर्फ बंद कमरे में सेमिनार नहीं
प्रत्यक्ष स्वच्छता के काम का महत्व क्या है उसको प्रयोग करके करना
1718 फ़रवरी को हैदराबाद में टॉयलेट पिट एम्पटाइंग एक्सरसाइज का आयोजन किया
छह घर के टॉयलेट पिट्स ख़ाली करके उसकी सफ़ाई की गई और अधिकारियों ने स्वयं ने दिखाया कि ट्विन पिट टॉयलेट के उपयोग हो चुके गड्ढों को उसे ख़ाली कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है
उन्होंने यह भी दिखाया कि यह नई तकनीक के शौचालय कितने सुविधाजनक हैं और इन्हें ख़ाली करने में सफ़ाई को लेकर के कोई असुविधा महसूस नही होती है कोई संकोच नही होता है जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है वो भी आड़े नही आता है और हम भी और सामान्य सफ़ाई करते हैं वैसे ही एक टॉयलेट के गड्ढे साफ़ कर सकते हैं और इस प्रयास का परिणाम हुआ देश के मीडिया ने इसको बहुत प्रचारित भी किया उसको महत्व भी दिया
और स्वाभाविक है जब एक आईएएस अफ़सर खुद टॉयलेट के गड्ढे की सफ़ाई करता हो तो देश का ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है
और ये जो टॉयलेट पिट की सफ़ाई है और उसमें से जो जिसे आपहम कूड़ाकचरा मानते हैं लेकिन खाद की दृष्टि से देखें तो ये एक प्रकार से ये काला सोना होता है
वास्ते से वेल्थ क्या होती है ये हम देख सकते हैं और ये सिद्ध हो चुका है
छह सदस्यीय परिवार के लिये एक स्टैंडर्ड ट्विन पिट टॉयलेट ये मॉडेल लगभग पाँच वर्ष में भर जाता है
इसके बाद कचरे को आसानी से दूर कर दूसरे पिट में रिडायरेक्ट किया जा सकता है
छहबारह महीनों में पिट में जमा कचरा पूरी तरह से डिकंपोज हो जाता है
यह डिकंपोज्ड कचरा हैंडल करने में बहुत ही सुरक्षित होता है और खाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण खाद एनपीके
किसान भलीभाँति एनपीके से परिचित हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैशियम ये पोषक तत्वों से पूर्ण होता है और यह कृषि क्षेत्र में बहुत ही उत्तम खाद माना जाता है
जिस प्रकार से सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है औरो ने भी बहुत इनिशिएटिव ऐसे प्रयोग किए होंगे
और अब तो दूरदर्शन में स्वच्छता समाचार का एक विशेष कार्यक्रम आता है उसमें ऐसी बातें जितनी उजागर होंगी उतना लाभ होगा
सरकार में भी अलगअलग डिपार्टमेंट स्वच्छता पखवाड़ा रेग्यूलर मनाते हैं
मार्च महीने के प्रथम पखवाड़े में महिला और बाल विकास मंत्रालय उनके साथ जनजाति विकास मंत्रालय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये स्वच्छता अभियान को बल देने वाले हैं और मार्च के दूसरे पखवाड़े में और दो मंत्रालय मिनिस्ट्री ओएफ शिपिंग पोत परिवहन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ओएफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन ये मंत्रालय भी मार्च के आख़िरी दो सप्ताह स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं
हम जानते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जब भी कुछ अच्छा करता है तो पूरा देश एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है आत्मविश्वास को बढ़ाता है
रियो पैरालम्पिक्स में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया हम सबने उसका स्वागत किया था
इसी महीने आयोजित ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बन करके देश का गौरव बढ़ाया
मैं एक बार फिर से टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ
देश को हमारे इन दिव्यांग साथियों की उपलब्धि पर गर्व है
मैं ये हमेशा मानता हूँ कि दिव्यांग भाईबहन सामर्थ्यवान होते हैं दृढ़निश्चयी होते हैं साहसिक होते हैं संकल्पवान होते हैं
हर पल हमें उनसे कुछनकुछ सीखने को मिल सकता है
बात चाहे खेल की हो या अंतरिक्षविज्ञान की हमारे देश की महिलायें किसी से पीछे नहीं हैं
क़दम से क़दम मिला करके आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन कर रही हैं
पिछले कुछ दिनों में एशियाई रग्बी सेवेंस ट्रॉफी हमारी महिला खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता उन सभी खिलाड़ियों को मेरी ढेर सारी बधाइयाँ
8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है
भारत में भी बेटियों को महत्व देने परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े संवेदनशीलता बढ़े
बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ ये आन्दोलन तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है
आज ये सिर्फ़ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है
ये एक सामाजिक संवेदना का लोकशिक्षा का अभियान बन गया है
विगत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चले आ रहे पुराने रीतिरिवाज़ों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है
जब ये समाचार मिलते हैं कि बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया गया इतना आनंद आता है
एक प्रकार से बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच सामाजिक स्वीकृति का कारण बन रही है
मैंने सुना है कि तमिलनाडु राज्य के कुड्डलूर ज़िले ने एक विशेष अभियान के तहत बालविवाह पर रोक लगाई
अब तक क़रीब 175 से ज़्यादा बालविवाह रोके जा चुके हैं
ज़िला प्रशासन ने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत क़रीबक़रीब 5560 हज़ार से ज्यादा बेटियों के बैंक अकाउंट खोले हैं
जम्मूकश्मीर के कठुआ ज़िले में कन्वर्जेंस मॉडेल के तहत समस्त विभागों को बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ योजना में जोड़ा है और ग्रामसभाओं के आयोजन के साथसाथ ज़िला प्रशासन द्वारा अनाथ बच्चियों को गोद लेना उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना इसके भरपूर प्रयास हो रहे हैं
मध्य प्रदेश में हर घर दस्तक के कार्यक्रम अंतर्गत गाँवगाँव घरघर बेटियों की शिक्षा के लिये एक अभियान चलाया जा रहा है
राजस्थान ने अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान चला करके जिन बालिकाओं का ड्रॉपआउट हुआ था उनको पुनः स्कूल में भर्ती कराना फिर से पढ़ने के लिये प्रेरित करने का अभियान चलाया है
कहने का तात्पर्य ये है कि बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ इस आंदोलन ने भी अनेक रूप धारण किए हैं
पूरा आंदोलन जनआंदोलन बना है
नईनई कल्पनायें उसके साथ जुड़ी हैं
स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसको मोड़ा गया है
मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूँ
जब हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाने वाले हैं तब हमारा एक ही भाव है
महिला वो शक्ति है सशक्त है वो भारत की नारी है
न ज़्यादा में न कम में वो सब में बराबर की अधिकारी है
मेरे प्यारे देशवासियो आप सब को मन की बात में समयसमय पर कुछनकुछ संवाद करने का अवसर मिलता है
आप भी सक्रियता के साथ जुड़ते रहते हैं
आप से मुझे बहुतकुछ जानने को मिलता है
धरती पर क्या चल रहा है गाँव ग़रीब के मन में क्या चल रहा है वो मुझ तक पहुँचता है
आपके योगदान के लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ
बहुतबहुत धन्यवाद